जिसमें एक बाइक से आदमी जा रहा है एक कार खड़ी हुई है।

सामान खरीद रहे हैं चार बाइक ऐ बाहर खड़ी हुई हैं ।

कुछ पेड़े लगे हुए हैं जिसमें एक तरफा रोड पे एक आदमी जा रहा है।

शटर भी हरे कलर का है पेड़ा भी --

इस चित्र में मुझे एक सड़क दिख रही है।

और एक सैनिक खड़ा हुआ है एक हरे कलर का डस्टबिन रखा हुआ है।

घर कने पेड़े लगे हुए हैं एक पहाड़ है।

इस चित्र में मुझे एक दुकान दिख रही है जिसमें--

सड़क के किनारे पे आइसक्रीम की दुकान है जो कि लोग खरीद रहे हैं कई बाइकें खड़ी हुई हैं।

इस चित्र में मुझे एक दुकान में फूल रखे हुए हैं जो कि वाइट सफेद कलर के हैं।

इस चित्र में एक स्टेज दिख रहा है जिसमें कई प्रकार के--

और दो आदमी स्टेज सजा रहे हैं।

हे ऑटो रिक्शा में सवारी बैठी हुई है।

बिल्डिंग के सामने डामर रोड है।

दो लेडी से बैठी हैं कई आदमी बैठ के खाना खा रहे हैं।

और एक फोर व्हीलर जा रही है ।